एक बड़ा-सा फील्ड भी दिख रहा है।

पेपर में कुछ लिखा हैं।

भी कुछ बना हुआ हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ हैं पोस्टर में--

बोर्ड में कुछ लिखा हुआ--